कुछ व्यक्ति लोग झाड़ू लगा रहे हैं।

लोहा के कुछ समान कसने वाला हैं।

उसके बीच बीच में बड़े-बड़े भी पेड़ है।